म अ. और कुछ पड़े-पौधे दिखाई दे रहे हैं | बिजली के खम्बे दिखाए दे रहा है आसमान ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है

और बहुत सारी औरतें दिखाई दे रही हैं जो कि पूजा स्थल की यह तस्वीर है जहाँ कि बहुत सारी औरतें वगेरा दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में एक हाथी दिखाई दे रहा है जो कि लेटा पड़ा है और बहुत सारे पड़े-पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

कलर का टी-शर्ट और पिले कलर का पेंट पहना है | एक एक आदमी बिल ब्लैक कलर का टी-शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ है |

लाल और उजला कलर से लिखा हुआ है दुकान का जो गेट है वह कांच का है और दुकान के जो कलर है वो पीले कलर की --

ये काला कलर का घर दिखाई दे रहा है बहुत सारे पड़े-पौधे दिखाई दे रहे है आसमान उजला कलर का दिखाई दे रहा हैं ।